सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है। एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। एक कांच के अंदर बहोत सारी क्रीमे रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे एक चर्च दिखाई दे रहा है। बहुत सारी लाईटें दिखाई दे रही है फूल दिखाई दे रहे हैं और सामने एक मूर्ति सी दिखाई दे रही है।

और उन दीवार पर लिखा है धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है।

इस इमेज में मुझे एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा। उस पे लिखा है टीका करण से मेरा बच्चा स्वस्थ है और मैं भी खुश हूँ।